--और काफी अच्छा लग रहा है स्टेज सजी हुई है लाइटिंग लगी हुई है और क्या कहते हैं एक सोफा भी पड़ा हुआ है सोफा बहुत अच्छा लग रहा है सोफा भी डिजाइनर है और काफी दिल आकार में ही रखा हुआ है इस सोफे --

एक व्हाइट कलर का बल्ब लगा हुआ है और ऊपर से लेके नीचे तक लाइट ही लाइट लग रही है धूम लुक धूम वाली लाइट लग रही है रोशनी ही रोशनी लग रही है।

स्क्रीन बनी हुई है यहाँ पर इंटरवल प्रोबेशन लिखकर आ रहा है पचास परसेंट छूट होगी--

ये भी एक स्टेज दिया गया है यहाँ पर सामने खाली है बहुत सा और काफी सारी चेयर्स लगी हुई है यहाँ पे किनारे पे लाल कलर के --

एक पाइप जा रहा है एक पाइप पड़ा हुआ है नीचे और एक गाड़ी का क्या कहते हैं गेट खुला हुआ है गाड़ी के पीछे भी खड़ी।